शीशा नजर आ रहा है दो स्पीकर भी नजर आ रहे हैं दीवार पे फोटोस लगी हुई हैं।

कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं गाड़ी को फूलों से सजाया है।

और लड़कियां अपना अपना काम कर रही हैं।

और यहां पर सब कुछ सफेद रंग का है टाइलें भी सफेद हैं और दीवार भी सफेद--

यहां पे काफी सारी चेयर्स है जो की ग्रे कलर की है।

एक औरत खड़ी है और वह माइक में कुछ बोल रही है।

नीचे सारा सड़क है खाली एक गेट है जोकि ब्लैक कलर का है।

और साफ नहीं है ये यहां पे शायद काम चल रहा है दिन का समय है।

और अंदर एक बंदा खड़ा हुआ नजर आ रहा है जिसने पर्पल कलर की शर्ट पहनी हुई है।

और इधर सारा रेता ही रेता हो रखा है शायद अभी काम जारी है--

और यहां पर काफी तस्वीरें नजर आ रही हैं दीवार पर दीवार का रंग है येलो ।

नीचे एक मोटा पत्थर भी रखा है।

एक कार जाती हुई दिख रही है जो की सफेद रंग की कार है।

कुछ रेड है कुछ ग्रीन है एक बूढ़े से अंकल बैठे हुए हैं।

एक खाली सड़क दिख रही है दिन का समय लग रहा है आस पास पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

बिल्डिंग के ऊपर ग्रीन कलर का शटर सा बना हुआ है अंदर एक लाइट भी जल रही है।

ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे हैं खेल रहे हैं।

चार लड़कियां है और एक लड़का है लड़के ने छोटे से बच्चे को गोदी में ले रखा है।

और दो लड़कियां फोन चला रही हैं।

और दिन का समय है पूरा उजाला है रोशनी है।